यह एक ढाबा है जिसका नाम मधुबन ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट यहां पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ होता है।

घास फूस भी हो गया है। झरने के ऊपर में एक तार खीची गई है।

मेन गेट के बगल में ही खिड़की लगी हुई है मेन गेट के बगल में चिट्ठी डालने वाली मशीन रखी हुई है।

बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हैं जो हरे रंग के हैं कुछ बांस के भी पेड़ लगे हुए हैं एक पोस्टर भी लगा हुआ है करके।

यह एक झरना है झरने के बगल बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो हरे रंग के हैं।

कुछ व्यक्ति झरने का मजा ले रहे हैं घूम रहे हैं एक कुत्ता है जो झरने के ऊपर एक वाइट कलर का गंजी पहन के लड़का जा रहा है।

मॉल काफी साफ सुथरी जगह लग रही है।

एक होलसेल है जिसमें बहुत सारे आलू के बोरे रखे हुए हैं।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

कुछ व्यक्ति झरने के ऊपर है झरने के अगल-बगल में पेड़ है बहुत सारे घास-फूस है मौसम साफ सुथरा है।

यह एक पेट्रोल पंप है जहां बहुत सारे व्यक्ति बाइक लेके आए हुए है पेट्रोल डलवाने।

कुछ गोनिया भी रखी हुई है जिसमें कबूतर के दाने रखे हुए हैं कुछ कबूतर के घर बनाए हैं जो घड़े के हैं।

यह एक हाल है। हाल में बहुत सारे सोफे लगे हुए हैं। कुछ ब्लैक कलर के लगे हैं। कुछ ब्राउन कलर के लगे हुए हैं।

मेन गेट के बगल के शीशे पे एक फोनपे का स्कैनर चिपकाए हुआ है काउंटर पे एक चेयर है जिसपे तौलिया रखा गया है।

दुकान के बगल में एक गेट लगी हुई है दुकान के बाहर दो लाइट लगी है जिसमें एक लाइट जली हुई है ।

बहुत सारी बिल्डिंग है बनी हुई है सब बिल्डिंगों में अलग-अलग होटल खोले गए --

यह एक शादी का मंडप है मंडप के ऊपर फ्लावर का डेकोरेट किया गया है।

झरने के साइड पत्थल पत्थल बहुत पत्थल मे थोड़ा थोड़ा घास हो गया है कहीं कहीं आसमान का मौसम साफ सुथरा है।